यहाँ पर एक पीला चुन्नी भी रखा है।

यहाँ फार्च्यून आयल रखा हुआ है।

और ऊपर ए उम आसमान दिखाई दे रहा है।

जोकि डांस के स्टाइल में खड़े हैं।

मेरे घर के सामने और एक आदमी ठेले पर फल बेच रहे हैं।